बिल्डिंग्स है पॉल्स है वायर्स है टाँकी है गेट है पौधे है पेड़ हैं।

लाईटस हैं विंडोज़ हैं साइकिल हैं बाइक्स हैं भेन हैं कार हैं खंबे हैं घार हैं टावर हैं।